नह न सामने की तरफ लड़किया डान्स कर रही है और वो घुटनो पर बैठी हुई है और यहाँ पर नीले कलर के पत्ते है उनके हाथ मे और नीले कलर का मॅट बिछा हुआ है।

अ एक दीवार है जिसमे अम्म जो पीले रंग की और जिसमे अम्म एक लाइन है साइड मे जो क्रीम लंग--

और अ ऊपर की तरफ एक पंखा है जो सफ़ेद रंग--